डस्टबिन्स भी दिखाई दे रही हैं यहां पे कुछ छोटे छोटे होटेल्स दुकान दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पे बहोत सारे पानी के बॉटल्स भी दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पे टमाटर और यहां पे छोटी सी बाउल के अंदर चटनी दिखाई दे रही है।

बहोत सारे लाइट्स दिखाई दे रहे है यहां पेट्रोल पंप के अंदर--